जहाँ पर लड़कियाँ यहाँ पढ़ती हैं और आगे लड़के भी कुछ बैठे हुऐ हैं जहाँ पर कोचिंग का पढ़ाई होता है।

एक जन ने लाल कलर की टी-शर्ट दूसरे जन ने येल्लो कलर की टी-शर्ट पहनी हैँ। दोनों ने हेलमेट एक ने हेलमेट लगाया हैँ। एक ने गमछा बांधा हैँ।